और इसमें सवारियां चल रही हैं पुल के दूसरी साइड में जो है मछली बिक रही है और ये जो है लोग मछली वगैरह खरीद रहे हैं।

मछली वो लोग जो है यहां ज्यादा पसंद करते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है ये तस्वीर।

ऐ जो है छाते लग रहे हैं और यहां बहुत सारे जो हैं कैम्प लग रहे हैं। ये किसी ए पहाड़ --

और इसमें जो है फूलों की मालाएं लग रही हैं और एटीएम जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ये सुविधा।

एक भवन है और ये शांति रसिका लाल एम धरीवाल जैन भवन है ये --

ये दोनों एडवोकेट हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ।